यह एक होटल है ये यहाँ पे शादी का माहौल चला है यहाँ पे बहुत सारे कुर्सी भी हैं यहाँ पे --

पेंट किया गया है पीला कलर से आप देख रहे है यहाँ पे --

औरते और ये जेंट्स ये है यहाँ पे अगल-बगल में कारे काले रंग का पर्दा भी लगा हुआ है ।

यहाँ एक गौतम बुद्ध का मंदिर है इसका इनका पेंट किया गया है सफ़ेद रंग से यहाँ पे --

ये एक मंदिर है इसमें बगल में बहुत सारे पेड़-पौधे भी है और अपना देश का तिरंगा भी है यहाँ पे ।